बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं कुछ नोटिस दिखाई दे रहे हैं।

तीन स्टूल दिखाई दे रहे हैं एक टेबल दिखाई दे रही है।

आसमान दिखाई दे रहा है कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है।

गाड़ी दिखाई दे रही है दूकान दिखाई दे रहें हैं परफ्यूमस की बोतल दिखाई दे रहीं हैं स्विच बोर्ड दिखाई दे रहा है।

डार्क ब्राउन कलर पुता हुआ है।

वाइट कलर से कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में एक कॉफ़ी का मग भी बना हुआ है। सीसीटीवी का कैमरा दिखाई दे रहा है।

फोटो भी लगा हुआ है सड़क दिखाई दे रही है।

यहां पे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिस --

बैनर लगा हुआ है ब्लू कलर का जिसमे व्हाइट कलर में सुपर मार्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

किसी का हाथ दिखाई दे रहा है। फूलो की माला दिखाई दे रही है।

यहाँ पे एक टेंट दिखाई दे रहा है वाइट पिंक और ब्लू कलर का बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है कोई बच्चे नृत्य दिखाई दे रहे हैं।